और कॉलेज का एक कलर पूरा वाइट है और दूसरा ब्लू और येलो कलर का है।

फर्श पे मार्बल पूरा रगा हुआ है बहोत ही पेंटिंग्स भी लगे हुएं हैं वाल्स पे।

ये एक ट्रेन ट्रेन दिखाई दे रहा है जो स्टेशन में रुका हुआ है यहां पे स्टेशन में जो ट्रेन रुका हुआ है वो ऑरेंज कलर का है।

योगा करने का स्थान है जहां पे सब मेडिटेशन में बैठे हुए हैं।

जहां पे सब उसके नीचे बैठे हैं सब ने ऑरेंज कलर का वस्त्र पहना हुआ है।

एक साड़ी लगाई हुई हैं और साथ में ड्रेसेस लगाए हुए लड़की के।

जो उसके नैपकिन के पास है टेबल पे खाने के लिए एक ब्रेड भी रखा हुआ है साथ में चश्मा भी रखा हुआ है।

चार लोग बैठे हुए हैं दो औरतें हैं और तीन मर्द हैं।

साथ में मां बरुनी और करुनी पिटा का बोर्ड लगा हुआ है। जहां पे जीरो पॉइंट जीरो लिखा हुआ है।